इस चित्र में एक केक शॉप दिखाई दे रहा है और इसमें एक शीशे मैं ढेर सारी केक को पैक करके रख दिया गया है।

डस्टबिन के बगल में एक झाड़ू भी है और डस्टबिन पूरा भरा हुआ है।

चित्र में एक कपड़े का दुकान दिखाई पड़ रहा है।

इस चित्र में एक फीस एकुबेरियम का दुकान दिखाई दे रहा है।

दो फैन है और एक अलमीरा है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है।

और अंदर एक लाइट जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

अम्म कपड़ा से कुछ ढका हुआ है और दो लाइट दिखाई दे रही हैं हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और इस मॉल के अंदर बहुत सारी दुकान और बैंक वगैरह है।

और इसके सामने बहुत सारे दो पहिया वाहन लगे हुए हैं।

इस चित्र में बहोत सारे तेल के डब्बे रखे हुए दिखाई दे रहे है।

और ऊपर एक पेड़ दिखाई दे रहा है और इसके कुछ दूर पर एक--

टावर दिखाई दे रहा है।

जिसमें की लाइट्स जलती हुई नजर आ रही हैं और इसमें कुछ पंखे भी हैं और बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं और इस रूम का गेट बंद दिखाई दे रहा है।